जोकि बच्चों की कपड़े की दुकान है।

यहाँ पे कोल् ड्रिंक भी मिलता है।

दो आदमी मिलके कलर कर रहे हैं।

यहां औरत मर्द सब डूब के है पानी में।